चित्र लग रहा है यहाँ चार लोगो ने सफ़ेद रंग के कपड़े और दो लोगो ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और उनके हाथ में किताब हैं।

यह दृश्य एक किराने की दुकान की लग रहा है | यहाँ पे बहुत सारी चीजे लगाई हुई है |

यह एक बहुत बड़ा मॉल लग रहा है जो की बहुत सुन्दर है।